इससे बगल में इधर-उधर बहुत पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक लग रही है जबकि कपडे की है | आगे उम् दिए जले हुए हैं सीढ़ी पे |

ये एक शॉप है जोकि बाइक का शॉप है टी_वी_एस का मम अंदर में बहुत सारी बाइके रखी हुई है।

नीचे ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ है नीचे सीढ़ी भी लगा हुआ है।

ये टॉवर लहरा रहा है जो गोल है बहुत सारी छड़े दिखाई दे रही है।